ये इमेज किसी ईस्कूल का लग रहा है इस में फोटू लगी हुई है भारत माता की भी फोटू लगी हुई हैं।

ये फोटो किसी स्टोर का है इस में एक ओइल की कुफिया भिया की हुई हे। जोकी और बोक्स्सेज भी आते हुई है।

कुछ बायोडी टाइप का रखा हुआ है इसमें कुछ यलो कलर के बॉक्स भी रखे हे कुछ और ग कलर के भी हे कुछ ब्लू कलर के भी देख रहे है और ये भी--

और इस पर एक वाच भी दिख रहा है जो सफेद कलर का शर्ट पहने हुए है।

ये फोटो किसी शहर का है सु सामने सूर्य दिख रही है येल्लो कलर के टावरस भी बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है ये-- ये एक निचे थोड़ी--

इस-- में एक सी सी टी वी कैमरा या होल्डर वागेरा भी दिख रहा है जो भी हो सामने--

ये इमेज किसी बिल्डिंग्स का है और इस बिल्डिंग के बगल मे पेड़ पौधे लगे हुए है जो थोड़े ऑरेंज ग्रीन कलर के है।

गट्टे भी नीचे डाले हुवे है बिछे हुवे है।